इके चारो तरफ छोटी छोटी दीवार की बाउंड्री है।

नीचे की तरफ पत्थर है और हरा पेड़ पौधा है।

यह फोटू में एक बहुत बड़ी पुराणी बिल्डिग है चारो तरफ खिडकिया है।

और पास एक बड़ो लाइट का खभा है खम्बो के ऊपर बहुत सारा तार हैघर के ऊपर एक रास्तो है एक बाल्कनी है पास में एक खडकी है पानी की टंकी है।